जैसे के कोई बीफ प्लाओ और मटन कुन्ना --

अपने परफॉर्मेंस पेश करते हैं और जिससे लोगों दिल और जिससे वो लोगों के दिल जीत लेते हैं।

एक ट्रेन की तस्वीर है इसे उर्दू में रेलगाड़ी भी कहते हैं लोग इस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।